जिसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

नीचे फर्श में टाइलसे लगाई गई है।

नीचे जमीन में हरी हरी घास उगी हुई है।

यहाँ बड़े अक्षरों में रोहिणी मोहिनी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह एक मस्जिद का दृश्य दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाउडस्पीकर भी लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

खिड़की में पर्दा लगा हुआ दिख रहा है।

सामने दो शेड बने हुए दिख रहे है।

नीचे एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

शोरूम के अंदर कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहां सलाद भी दिखाई दे रहा है।

यह रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है सामने सीढी भी बनी हुई है।

यहां बड़े अक्षरों में एमरल्ड होटल लिखा हुआ है।

यह एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने बड़े अक्षर में आई_सी_आई_सी_आई बैंक लिखा हुआ है।